और हम देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग शीट्स पेंट्स है और यहाँ पे हम बच्चों को देखते हैं जो ड्राइंग पेंट कर रहे हैं ।

पेड़ भी है और आसमान सफेद है और यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जींस पहना है ।

और यहाँ रेड टेबल्स और वाइट चेयर्स हैं।

और यहां पे थोड़ा सा अंधेरा छाया है यहां पे --

यहां एक ऑफिस दिखाई दे रहा है और यहां पे--

यहाँ पे खिड़कियाँ है और यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स लगाए हैं ।

यहां पे बड़ा सा समुदर का पानी दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पत्थर है यहां पे और बहोत सारे--

भरे भरे घांस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं और गुब्बारों का रंग लाल है।

एक लड़का खड़ा हुआ है ब्लैक जींस और ब्लैक शूज पहना है।

बड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है बहुत सारे गाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे टेबल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे छोटे-छोटे गोल्डन वर्क भी दिखाई दे रहे हैं।

बत्तर नजर आ रहे हैं यहां आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे कुछ क टमाटरों के ऊपर छेद हुआ है।